ऊपर में पहाड़ टाइप थोड़ा छोटा -सा मैदान है उसके उपर में सीढ़ी जैसा बना हुआ है यहाँ एक गाड़ी खड़ी है यहाँ लाइट खंबा है बिजली वाला--

दिखाया गया है उसके पूर्वजो के बारे में --

बहुत तरह-तरह के कपड़े है स्टायलिश कपड़े है जो टँगाया हुआ है इसको बेचते होंगे लोग खरीदने आते है।